दो डॉक्टर है जो की व्हाइट कलर का कोट पहने हुआ है और एक डॉक्टर जो है वो सेलेनडर को कुछ कर रहा है और व्हाइट कलर का--

वह प्रिंटिंग मशीन है और अं बहुत बड़ा रूम है जिसमें--

और इधर साइड से भी दीवाल पूरे पैक है जो की हॉल टाइप का लग रहा है।

और उसमें पेड़ पौधे भी साइड साइड से लगे हुए हैं।

और उस बिल्डिंग का खिड़की ब्लू कलर का है जो कि एक दो तीन फ़्लोर का बिल्डिंग हैं।

एक घर है जिसमें गैस रखा हुआ है रेड कलर का और एक रेड कलर का डेब्बा रक्खा हुआ है।